मुझे एक सीढी दिखाई दे रही है लोहे की और कुछ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसको बहुत ज्यादा शीशे की खिड़की लगी हुई है।

और भी बहोत कुछ सामान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारी शीशे की खिड़कियां नजर आ रही हैं।

मशीन दिखाई दे रही है शीशे वाले दरवाजे ए_टी_एम मशीन के पास बहुत सारे लोग खड़े नजर आ रहे हैं।